क्रीम कलर की बिल्डिंग है हरे रंग के पेड़ है छोटा सा घर है क्रीम कलर का--

हरे रंग के पेड़ दिख रहे हैं।

पीला मैट बिछा हुआ है एक आदमी सफेद शर्ट पेहने हुए हैं एक आदमी काला शर्ट पेहने हुए है।

दीवार पर पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

दीवार पर सफेद ट्यूबलाइट लगी हुई है।